रोड के बीच में सफेद पट्टी बनी हुई है।

यहां सामने एक शेड बना हुआ है।

जिसमें चार लोग खड़े हुए हैं कुछ ले रहे हैं विंडो से--

यहां पेट्रोल पंप के टैंक भरे हुए दिख रहे हैं।

जिसपे लेकिन पार्क में कोई भी दिख नहीं रहा है हमें।